टॉर्च भी लगे हुए हैं सामने अलग-अलग--

जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूं तो बोहोत सारी भगवान की मूर्तियां वहाँ पे रखी हुई दिखाई जा रही हैं।

कपड़े बाहर सूखते हुए दिख रहे है ये तीन मंजिल की बिल्डिंग है।

जिसका नाम है होटल है हेरिटेज इन ।

एक ब्रिज जाते हुए दिखाई दे रहा है ये एक बोहोत सुंदर सा पार्क है बोहोत सुंदर सुंदर लाइट्स लगाई गई है।

दूर-दूर तक थोड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं थोड़े बोहोत वहाँ पे पेड़ भी लगे हुए हैं हर जगह पे--

जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूं तो एक रास्ता दिखाई दे रहा है रास्ते पे बोहोत सारी दुकान वहां पे--